और पीछे पीछे भी चार चार नारियल के पेड़ है यहाँ पे एक बाइक ठहरा हुआ है | एक आदमी ठहरा हुआ है।